बहार एक छोटा सा ग्राउंड है जिसमे पेड़ पौधे लगे है नीचे जमींन में गमले रखे हुए है।

ए एक मार्ट है जिसके ऊपर टेरी नीट मेगा मार्ट लिखा है मार्ट को लाइटों से सजाया गया है।

जिसके ऊपर सूचना पट लिखा है।

एक भेड़ है जिसमें बत्तियां नहीं है।

रैक में अलग अलग किस्म के फल हैं।

दीवाल को काले रंग से पेंट किया गया है।

दूसरे घर के ऊपर नीले रंग कि टाइल लगी हुई हैं।

दूर एक बड़ा सा टेबल है जिसके ऊपर प्लास्टिक के टब रखे हैं।

खिड़की के ऊपर एक बोर्ड बना है।

दूकान के बाहर दो आदमी है दोनों के कंधो में बैग टंगा हुआ है।

कुर्सी को सफेद कपड़े से सजाया गया है।

सामने स्टेज है स्टेज पे लाइटें और फूलों सी सजावट की गई है।

ग्राम के कोने में एक स्मारक बनायी गई--

सड़क के किनारे तीन क्रेनें खड़ी हैं।

काफी दूर ऊँची-ऊँची बिल्डिंगे दिखाई दे रही है--

पोस्ट के सामने एक आदमी बैठा है।

सामने एक दीवार है दीवार पे तस्वीर टंगी है दूसरी दीवार पे एक अलमारी के अंदर दिया जल रहा है।